यह एक बाज़ार है | यहाँ पैन्टेर्स एक्सो सीरीज रिपेयरिंग के सर्विस सेंटर है । यहाँ पे ऑटो पुराने बाज़ार डाक बंगला के सामने लखीसराए टी.वी.एस. शोरूम है ।

मिलती है यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी समाने बनी हुई है मूर्ती बने हुए हैं और बहुत सारे चे --

मेडिकल है। इस मेडिकल में यह आदमी दवाई लेने के लिए आया हुआ है। मेडिकल में हमें सभी तरह कि दवाई मिलती है। इस मेडिकल में बहुत अच्छी आद बहुत अच्छी-अच्छी दवाई मिलती है। यह दुकान --

यहाँ पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे एक लड़की भी है और बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं।